आदमी दो बैठे हुए हैं सामने बैनर में लिखा है फ्रेशर ।

पेड़-पौधा भी है कोई बाइक से जा रहा है कोई पैदल जा रहा है कोई साइकिल से जा रहा है कोई रिक्शा से जा रहा है।

रसीली आइटम में और भी बहोत बड़ा मार्केट में तो बहोत सी दुकान रहते हैं ना बस वही है यहां--